अ रूम में वो बिजली का बोर्ड लगा हुआ है दो उसमें बहुत सारे बटन हैं ।

यहाँ पे तिबत्तॆ लोग का --

पाँच पेज अलग-अलग है और लाल कलर में पोताई किया गया हैं ।

पिकनिक मनाने आए है और फोटो खींचा रहे ये बहुत बड़ा पहाड़ है पत्थर का इसमें छोटा-छोटा पौधा उगा हुवा है बीच-बीच से --

दो चट्टानों के बीच से गिर रहा है और ये जगह बहुत सुन्दर लग रहा हैं ।

पानी भी मस्त ये दिख रहा है और ये जंगली इलाका है यहाँ हरे-भरे पेड़-पौधे छायादार पौधे हैं।

ये स्टेट बैंक ए.टी.एम. है यहाँ पे डॉक्टर संतोष कुमार लिखा हुआ हैं ।

और नदी में दो-तीन गुब्बारा है जो तैरते हुए यहाँ के बह रहा है और पेड़-पौधे दिख रहे --

में छोटे-छोटे घास लगे हुए हैं ।

ये एक शहर है शहर में बस चल रहा है ऑटो चल रहा है रिक्शा चल --

शायद ये पेड़ मर गया है और एक पेड़ है उसपे फूल लगा हुआ है ये बहोत अच्छा दिख रहा हैं ।

यहाँ पे कोई पार्टी -वार्टी चल रहा है यहाँ बहोत सारे लोग आए है इक्कठा हुए हैं।

यह जगह को अच्छे से सजाया गया है और केटरिंग भी बुलाये है यहाँ लोग खा-पी रहे हैं ।